यह रोड है यहां पे काफी बड़ा सारा टैंकर खड़ा हुआ है जो कि सफेद रंग का है पे-भारत पेट्रोलियम है।

निचे कुछ टाइल्स लगे हैं वहाँ आसपास काफी सारे डब्बे रखे हुए दिख रहें हैं। कुछ मशीन दिख रही है कुछ टेबलें रखे हुई हैं जहाँ उन्हें कुछ पत्थर दिख रहें हैं।

एक तल्ला मकान है जो की सफेद रंग का है उसमे कुछ जालियां दिख रही है आस-पास काफी सारे पेड़ लगे हुए है जिसमे हरे कलर के पत्ते है।

रानी कलर के कपड़े पेहने है कोई लाल कलर के कोई काले कलर के पेहने है पीछे झंडे लगे हैं जो कि नारंगी सफ़ेद हरे रंग के दिख रहे है और नीचे कारपेट है हरा कलर का।

रोड है यहां पर एक कार खड़ी है जो कि काले कलर की है और आस-पास काफी सारे पाइप लगे हुए है इनमें कुछ टायर लगे हुए है जो कि काले कलर की और सिल्वर कलर के है कुछ क-कार्टून के ढक्कन पड़े हुए है।

आस पास काफी सारे पेड़ लगे हैं कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे हैं आस पास काफी सारे पत्ते है जो हरे और पीले कलर के हैं |

ऊपर आसमान है जो कि सफ़ेद रंग का है नीचे बाल्टी रखी हुई है छत पे जो कि लाल रंग की है।

काफी सारे काफी सारी गुड़ियाएं रखीं ऊपर आसमान है जो की सफेद रंग का है कुछ कुर्सियांँ रखी हुई हैं जिसपे कत्थई और सफेद कलर की दिख रही हैं आस पास काफी सारे लोग खड़े हुए हैं।

सारी दुकान है यहाँ पे दो दुकाने हैं यहाँ पर काफी सारा सामान रखा हुआ है बाहर काउंटर रखा है जो सफ़ेद रंग का है ।